और नीचे नंगे पैर है एक झोला लटकाए पीछे से कई सारे पेड़ है और पीछे बिल्डिंग भी है जिनका कलर ग्रीन है ऊपर नीला आसमान है ऊपर वायर --

यह एक हॉल है हॉल मे बहुत सारे ये प्रोजेक्ट का समान रखा है प्रोजेक्ट मे ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है जिनका कलर रेड --